भगवान की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।

मज़ार के ऊपर रेड और ग्रीन कलर का कपड़ा दिखाई दे रहा हैं।

यहाॅं भी बार्बी डॉल के केक्स और यहाॅं पे पेस्ट्रीज दिखाई दे रहीं हैं।

बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बड़े -बड़े पेड़ों की डंडी भी दिखाई दे रही है।

यहां भी बीच टेबल के बड़े बड़े बास्केट दिखाई दे रहे--

छोटे छोटे घास मिट्टी दिखाई दे रही है।

और यहां छोटे छोटे प्लास्टिक के कप्स दिखाई दे रहे हैं और यहां सब के हाथ में छोटे छोटे चाय के कप्स दिखाई दे रहे हैं।

स्विमिंग पूल के आस पास छोटे छोटे लाइट है हरे बड़े पेड़ है और यहां पे आसमान बादल भी दिखाई दे रहे हैं।